उसके सीढ़ी के ऊपर भी कई सारे लोग खड़ा हैंजो की महिला पुरुष हैं।

ये किसी बड़ा बिल्डिंग का तस्वीर है जिसके बारे में कई सारे पेड़ पौधे हैं।

जिसके बाहर से पीला रंग से रंग किया गया है।

वहां पे एक आदमी कपड़े को क्लीन कर रहा है।

और एक आदमी हेलमेट लगाया हैजो की ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ--

मे कई सारे रंग बिरंगे लाइट भी लगे हुए हैं।

और वहां पर लड़कियों ने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं।

जहां पर एक सफेद कलर का गाड़ी है।

वाइट कलर के सामान भी रखे हुए हैं और बाहर एक छोटा सा पेड़ भी पौधा भी --

और दो आदमी बैठकर काम कर रहे हैं।

यह एक मिठाइ का दुकान है जहाँ पर कई तरह तरह के मिठाइयां दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रोड का तस्वीर है जिसके बाहर एक छोटा सा घर है जो की ए _टी_एम भी है।

यह किसी आइसक्रीम पार्लर है।

और उसके बाहर दो आदमी बैठे हुए हैं।

थोड़ा सा लाइट भी लगा हुआ है।

जहां पर कई सारे बच्चे गए हैं वहां पर मंदिर के पास ।

यहां पर एक मैडम भी खड़ी हैं जो की व्हाइट कलर के कपड़ा पहनी हुई है।

जिसका चार का अह कार का सब दरवाजा खुला हुआ है।

यह घर को रंग किया गया है ऑरेंज कलर से।

जो कि अपने हाथ से रंग के रहे हैं।

हाथ का निशान लिया जा रहा है जो कि हरा कलर से लिया जा रहा है।

उसके ऊपर एस_बी_आई का लोगो लगा हुआ है।